और कुछ मार्किट में लगे हुए हैं शायद साथ में सारे लोग मार्किट करने वाले भी हैं |

और शर्ट और जीन्स पहने हुए है और चश्मे भी लगाए हुए है।

इस चित्र में दो लडकियाँ सेल्फी घी खिंचवा रहीं हैं दै सिटी कैफ़े के सामने।

यह एक-एक पहाड़ का चित्र है जिसमें छोटे-छोटे पत्थर दिख रहे हैं छोटे पौधे भी दिख रहे हैं हरी पौधे भी है और सुखी पौधे भी।

इस चित्र को देखने पर किसी स्कूल का ग्राउंड

और ये एक शेर का भी चित्र दिया हुआ है। साइड शेर के ऊपर एक पेड़ का भी चित्र है।

और ये साथ में ये टाइल्स भी लगी है जो वाइट कलर की है और दिवार का कलर भी वाइट --

और ट्रक लगी है जिसमें डीजल सॉरी पेट्रोल डीजल डाला रहा है।

ओर एक ये यहाँ पे इंसान है जो केओस क्रिएट कर रहें हैं |

जिम करने वाले सारे सारे प्रोडक्ट्स हैं।

पहाड़ और साथ में ये कुछ पानी जमे हुए हैं पहाड़ के उपर भी --

इसमें दो प्लेयर हैं दो टीम है एक टीम --

साथ में भी पहने हुए हैं चश्मा लगाए हुए हैं खड़े हैं।

यह एक मंदिर का चित्र हमे दिखाई दे रहा है जो की व्हाइट कलर की चित्र है।